इसके अंदर एक बहुत बड़ी नाव है।

मंजिल बनी है साइडो में इसके खिड़कियां बनी हुई है।

जिसमें की कंबल और साड़ियां पड़ी हैं।

ऑरेंज कलर के पॉल है और--

सामने एक किचन दिखाई दे रही है।

जोकि अपने अपने मैट पर--

पंद्रह तरवंजा भी लिखा हुआ है।

जो की सफेद रंग से लिखा है।

अलग अलग थंबे लगे हुए हैं।

और नीचे स्पा एंड सेलिन लिखा हुआ है।